उसका घर है मकान भी है।

एक नंबर प्लेट फार्म है।

नाम भी लिखा है स्टेशन का नाम भी लिखा है।

एक आदमी खड़ा है।

दो तीन सीढ़ी भी खड़ा है।

पांच गमला भी है।

दरी भी है आदमी भी है पंडाल भी है त लाइट भी है।

उस पार में पेड़ का छाया--

दो खिड़की हैं एक पाइप है तीन पोस्टर हैं ।

दस बीस गो लाइट भी होगा।

जाली वाला है जाली इधर भी है।

एक टोटो है स्कूटी है मोटरसाइकिल है दो टोटो है।

हाता घेरा हुआ है उधर भी बिल्डिंग भी है।

छोटा छोटा गाछ है इधर।

पूल भी है बच्चा भी है छरकने वाला है।

इधर पानी का बोतल भी है।